मैं देख पा रही हूं यहां एक पुराना घर नजर आ रहा है।

चारों तरफ धूधला धूधला दिखाई दे रहा है और ब्लैक भी नजर आ रहा है।

बोतल का पानी भी रखा हुआ है ऊपर फैन लगा हुआ--

एक बड़ा सा मेज रखा हुआ है।

ओ यहां एक बहोत बड़ा पिंजरा है।

और चारों तरफ पोस्ट फ_सी का लगा हुआ है।